ये स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया है। ये चाम राज नगर का है। ये हम लोग के एरिया में भी है। ये काफी अच्छा और सरकारी बैंक है। इसका ज्यादा रेस्पोंस्बिलिटी होता है। और इस तरह के बैंक जो है --